सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है।

यहाँ पे हम एक सुंदर सा पार्क देख पा रहे है इस पार्क में बहोत सारे बच्चों का खेलने का चीज है एवं इस पार्क के--